और यहां पे अलग अलग कलर की साइकिल खड़ी है रेड ब्लू ग्रीन येलो हर एक कलर की खड़ी है और न्यू स्टाइल्स की भी साइकिल है और पुरानी भी है।

ये एक क्रीम नगर डिपार्टमेंट डेयरी पार्लर है यहां पे--

एलायंस एयर का छोटा वाला एयरप्लेन है यह वाइट कलर का--

काफी सारे स्टैंड हैं उनके अंदर भी काफी सारी बुक्स हैं अलग-अलग तरह के नोवेल्स भी मिल जाते हैं।

बारहस्थली का शोरूम है यहां पर लेडीज सूट लेहंगा और साडी मिलती है।

यह एक होटल सुखदेव पैलेस है बाहर मेंन गेट पे काफी अच्छी डेकोरेशन हो रखी है बहुत बड़ा गेट है इनका--